यहाँ घास दिखाई दे रही है हरी-हरी घास है पीछे में रस्ता जाता हुआ दिखाई दे रहा यहाँ पर रेलिंग लगी हुई है।

पीछे स्ट्रीट लाइट है| यहां पे हमें कुछ और भी बड़े भी पौधे दिखाई दे रहे हैं| कोई बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं फूलों के पौधे दिखाई दे रहे हैं और काली रात दिखाई दे रही है गमले दिखाई दे रहे हैं।

सफेद बादल दिखाया दे रहे हैं बिल्डिंग हमें येल्लो कलर की पेंट लगी हुई दिखाई दे रही है|